इसके अलावा यहां पर फिर रोशनी के लिए बल्‍ब भी लगाये गये है और बहुत ही प्‍यारी सी डेकोरेशन की गई है ।

ये एक बहुत ही सुंदर सा किला है जहां पर बहुत सारी हरियाली है और बहुत सारे वृक्ष भी हैं ।

ये एक चिकित्‍सालय है यहां पे मुकतलिब बीमारियों से बचाव के लिए मरीजों की सुरक्षा की जाती है--

ये एक बहुत ही सुंदर सा पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप पे दो पुरूष मौजूद है जो पेट्रोल और डीजल दोनों गाडि़यों में डालते है और गाड़ी--

यहाँ पर अपने बैठ के खाने के लिए भी सामान मौजूद होता है यहाँ पर शेफ भी मौजूद है यहाँ हर किसम का खाना बनाने के लिए इसमे सलाइते होती है ।

इसके अलावा हमने इनको खरीदने से अ हमारे अ दुकानदारों का भी फायदा होता है।

ये एक बहुत ही सुंदर सा स्‍थान है यहां पर बहुत सारे वृक्ष लगाये गये हैं इसके अलावा यहां पर दो गाडि़यां खड़ी है और ये --

इस किले के सातम्‍द लोग आकर चित्र बनाते है और चित्र बहुत ही जादा खूबसूरत लगते है क्‍योंकि ये एक बहुत ही सुंदर सा किला है ये --

यहां पर प्रकाश के लिए बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं और इसके इलावा एक इन्‍त्र इन्‍द्रधनुष बनाया गया है और इस इन्‍द्रधनुष को आ

यहां पर मुकतलिब किस्‍म के हैं म पौधे मौजूद है हम इन पौधों के बारे में अपने शिष्‍यों को ज्ञान दे सकते हैं ज्ञान में --

हम अ अपने बच्चो को इंडिया के बारे मे ज्ञान दे सकते हैं।

ये एक तफरीही मकाम है यहां लोग सहरो तफरीह के लिए आते हैं यहां मुक्तलिफ रंगों के फूल होते हैं इन फूलों के मुतालिक हर उम्र के लोगों को रहनुमाई दी जाती है।

यहां पर बहुत सारे खूबसूरत देरक्‍त है और यहां पर एक-सी झोपड़ी बनाई गई है एक खूबसूरत सा ताज --

इस मकाम को भी एक तफरीहिम मकाम कहा जा सकता है बच्‍चों को यहां पर लाया जा सकता है और इन्‍हें तालीम दी जा सकती है जड़ी बूटियों के बारे में भतको के बारे में --

यहाँ पर हर किसम कि चीज मौजूद होती है जिससे खाना बनाया जा सके जिससे खाना परोसा जा सके और बच्चो को इससे लसफंदोस किया जा सके ।

ताकि छात्र या शिक्षक अपना ध्‍यान एकत्रित करके ज्ञान में बृद्धि कर सकें यहां --

यहां पर वस्‍त्र भी सुखाये जा रहे हैं और इसके अलावा यहां पर हमने सजाये हुए आ आ फूलों वाली टहनियां भी लगाई गई है ।